इस दृश्य में हमें एक रोड दिखाई दे रहा है।

रोड के पास में हमें बहुत सारी--

इसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ हैं।

इसके ऊपर हमें बहुत सारे व्हीकलस दिख रहे हैं।

इस दृश्य में हमें बहोत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे है।

पहाड़ों के पास हमें हरे भरे वृक्ष भी दिखाई दे रही है।

ऊपर थोड़ी डेकोरेशन भी की हुई है।

जिसके लिए हमे एक आदमी एक बहोत बड़े होल से अंदर घुसते हुए नजर आ रहा है।

और क्रीम कलर की फ्लोर भी दिख रही --

ग्राउंड की ऊपर बहोत हरी भरी घास उगी हुई है।

इमारत बनी हुई नजर आ रही है।

देखने में यह दृश्य हमें किसी शॉप का लग रहा हैं।

इस दृश्य में हमें एक रूम दिखाई दे रहा है।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

इसके ऊपर हमें बहोत सारी लाइट्स भी लगी हुई नजर आ रही है।

जिसमें हमें बहोत सारी दवाइयां पड़ी हुई नजर आ रही हैं।